जैसे की अ कुछ अच्छा चल रहा है कोई शोभा यात्रा भगवान का चल रहा है जहाँं पे मूर्ति की पूजा हो रही है।

बहोत सारे लोग भी यहाँ पे खरीद रहे है एक औरत-दो औरत है जो खरीद रहे है और बहुत सारे जो मर्द है वो चल रहे है।